और इसमें मशीन है और एक बोटल भी राखी हुयी है।

पानी भी दिखाई दे रहा है और यहा पर रोड है | रोड के साइड में गाड़ियां खड़ी हुई है।

निचे ज़मीन पर अ टाइल्स लगे हुए हैं और साइड में अ कुछ लकड़ी का रखा हुआ है।

इसमें चार से पांच अ कुर्सियां रखी हुई हैं | पीछे साइड खिड़कियां भी हैं | दो तीन गेट भी लगे हुए हैं | और इसमें नीचे जमीन पर टाइल्स हैं ।

इसमें फूल भी दिखाई दे रहे हैं और वायर्स भी लगे हुए हैं और एक आ टावर भी दिखाई दे रहा है।

इसमे दो तीन लोग दिखाई दे रहे हैं और एक लड़की खड़ी हुई है जो की छोटी बच्ची है | पीछे साइड पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।